जैसे कि मैं देख पा रही हूं ये दिन का समय है यहां पर एक बिल्डिंग बनी हुई है बिल्डिंग के ऊपर कुछ नीले रंग का डिजाइन बना हुआ है।

जो कि हरे भरे घने घने हैं कुछ बिल्डिंगें भी हैं बिल्डिंग के पास एक कार खड़ी है कार के पास कुछ लोग खड़े हुए हैं।

ये कोई चाबी पकड़ रहे हैं और यहां पर ही एक ई रिक्शा भी खड़ा हुआ है।

इन गमलों के पास कुछ खंबे भी लगे हुए हैं उनके ऊपर कुछ टेंट भी बना रखा है।

इन्होंने कुछ कैप्स भी पहन रखी है यहां पर एक कुछ लिखा भी पड़ा है लाल रंग का बोर्ड है उसके ऊपर सफेद रंग का कुछ लिखा हुआ है।